और यहां का संसद मार्ग है डबल वन ट्रिबल जीरो वन ।

स्वस्थ्य रखने का कुछ इनफॉर्मेशन देखे है में।

इन डाग घर के अंदर--

वो अपना काम रिसेप्शनिस्ट या मैनेजर को पूछकर कर रहे है।

कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं यहां पे--

इच्छवे के गुफा में--

लड़का जो प्रजेंटेशन दे रहा है।

इस छवि में एक स्कूल दिखाई दे रहा है जो स्कूल का नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है ब्लू बेल्स ।

में एक सुंदर सा स्वच्छ सा --

है उसका नाम क्रॉस बोर्ड है।

एक मुनासिपार्टी दिखाई दे रहा है।

विभिन्न-विभिन्न तरह के ब्लेजर्स रखे हैं।

विभिन्न विभिन्न तरह के--

इसमें एक बहुत बड़ा सा घर है।